अ हरियाली चारों तरफ देखने से हरियाली का बहुत ही --

और एक आदमी है जो वहाँ पर खड़ा है।

और इनके आगे पेपर है वाइट कलर का ।

ए ए पत्तियां का एक लाइन दिखाई गई है।

चित्र में बहोत सारे आदमी --